कहीं रंग सफेद नजर आ रहे हैं। बस के पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ का रंग हरा है। सड़क का रंग भूरा है।

यहाँ एक सड़क नज़र आ रही है सड़क --

उसका रंग सफेद नजर आ रहा है स्वागतम लिखा हुआ है गेट --

पंखे दिखाई दे रहे है पंखो का रंग काला नजर आ रहा है दिवारों --

नजर आ रहा है। एक थाली रखी हुई है। थाली का रंग पीला है। उसमे दो लोटे है। लोटे का रंग पीला है। एक डलिया है। उसका रंग गुलाबी है।

घास का रंग हरा है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान का रंग सफेद है। गाड़ी का रंग नीला और हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ यात्री --

यहाँ एक गार्डन दिखाई दे रहा है। गार्डन मे कुछ पेड़ लगे हुएं --

ऊपर लाल रंग से शिवशक्ति लिखा हुआ है।

हा जिसके तनिक कथई रंग के नजर आ रहे हैं।